बहुत सारे बेंच रखा हुआ है टेबुल भी है।

आदमी बहुत आदमी खड़ा है और बोर्ड है टेबुल है घर है बहुत चीज इसमें है ।

आदमी है रेल है और बहुत आदमी है यहाँ पे और झाडी है बहुत चीज़ रखा हुआ है ।

होट होटल मयूर बिहार है और कुर्सी है आदमी है मोटर साइकिल है और टेबुल है।

बस है आदमी है सड़क है बहुत पेड़-पौधे है पौधा है और आदमी है ।